यहां पर बहुत सारा बड़ा बड़ा पेड़ है।

ये आगे में एक बहोत बड़ा पेड़ भी है।

यह एक रेलवे स्टेशन का लिया गया फोटो है।

इसमें बहुत सारी छात्राएं एक्सरसाइज करते हुए नजर आ रही है।

बहुत सारे लीची बॉल भी लगाए गए है।

यह एक कोई जिम का फोटो है।

और एक व्यक्ति खड़ा है दोनों ने टी शर्ट पहना हुआ है।

इसके बगल में एक लाल और सफेद कलर की बलूंस टांगी गई हैं।

एक व्यक्ति है जो बंडी और कुर्ता पहना हुआ है।

इसमें से बहुत सारी टेबल और कुर्सियां रखी गई है।

दो व्यक्ति और एक औरत भी हैजो बोटिंग कर रही है।

घर भी एक कटाव में है जो बोटिंग करते नजर आ रहा है।

यह एक रोड के बगल में दुकान का फोटो है।

यहां पे बहोत सारा खिलौने का समान ऊपर मे टांगा गया है।

एक चप्पल पहना हुआ है।

उस से आगे में बहुत सारा टेबल कुर्सी लगाया गया है।

एक व्यक्ति बेड शीट ओढ़ा हुआ हैऔर एक बैग लेकर सोया है।

घर बन रहा है जिसमें से बास की बहुत सारी पाइपे लगाई गई हैं।

यह एक बाल का फोटो है।

किड्स वेयर सेल वोमेन वेयर मेन्स वेयर नीचे में बहुत सारी पोस्टर बनाकर सूट और साड़ियों की टागी गई है।

मे इसके बगल मे शटर के पास एक साइकिल भी है जो लाल कलर का है।

यह एक कोई चूड़ी का दुकान है।

टेबल भी है लंबे लंबे जिसमें बैठने के लिए रखा गया है।

तरह से बगल में एक दो लोहे की पॉल पोल लगाई गई।

यह फ्रिज में रखा हुआ दो केक का फोटो है।

अंदर में भी फ्रिज में बहुत सारी दूध और सामानें रखी गई है।

बगल में एक टेबल भी है जो लाल कलर का है।